इसके अंदर काफी बड़े-बड़े मिरर्स भी लगे हुए हैं।

व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

उसने वाइट शूज स्काई ब्लू पेंट वाइट जैकेट --

नीचे की साइड कार्बोआइट के बनी हुई--

ये पिक्चर एक मार्केट की है।

जिसके अंदर काफी सारे व्यक्ति--

और पीछे की साइड एक सिग्नल टॉवर भी है।

इसके बीच से एक--

जिसके अंदर काफी कंफर्टेबल --

लाइट्स भी लगी हुई है।

कपड़े भी सूख रहे हैं।

यह पिक्चर एक कार रिपेयरिंग सेंटर की है।

और ऊपर करकट दी गई है।

ये पिक्चर एक डांस क्लास की है।

ब्लैक कलर के पर्दे भी दिख रहे हैं।

काफी बड़े बिल्डिंग की है।

इस पिक्चर में दो पार्क दिख रहे हैं।

इसमें कुछ खिड़कियां भी--

जिसमें एक मोर दिख रहा है।

और इसमें फटरी दो बाकी है।

जिसके अंदर काफी सारी सब्जियां--

कार रिपेयरिंग सेंटर का है।

एक कार को ठीक कर रहा है।

यह पिक्चर एक विद्यालय का है।

जिसका नाम महागोविंद सिंह महाविद्यालय है।

द कूक बो की कैफेस किचन है।

इसके अंदर काफी कंफर्टेबल टेबल्स और--

नीचे की साइड टाइस भी है।

इसकी दीवार वाइट कलर की है।

यह पिक्चर एक काफी बड़े बिल्डिंग की है।

और एक व्यक्ति का हाथ भी दिख रहा है।

और इसमें एक पेड़ और कुछ पौधे हैं।

यह पिक्चर एक ड्राई फ्रूट की शॉप की है।

जिसका नाम पटना ड्राई फ्रूट्स है।

और इसमें काफी सारे ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं।

ये पिक्चर रात में ली गई है।

नीचे की साइड वुडेन वाइट टाइस है।

यह पिक्चर एक फर्नीचर की दुकान का है।

जिसके ऊपर ब्लू करकट है।

इसके बाहर कुछ व्यक्ति और कुछ वाहन--

यह बिल्डिंग काफी बड़ा है।

यह पिक्चर एक क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के--

और इसकी दीवार वाइट कलर की है।

यह पिक्चर एक ऑफिस का है।

ऊपर कुछ लाइट्स भी दिख रहे हैं।

और कुछ वाहन दिख रहे हैं।

जहां पर काफी सारे स्टील से बने हुए---

इसके चारों तरफ काफी बड़े-बड़े बिल्डिंग्स --

और इसमें काफी सारी दुकानें दिख रही है।

यह पिक्चर एस_ बी _आई के ऑफिस की है।

इसके बाहर कुछ वाहन भी है।

और इसमें कुछ व्यक्ति भी दिख रहे हैं।

और नीचे टाइस भी है।

जिसमें काफी सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं।

इस पिक्चर में काफी सारे पैर दिखाई दे रहे हैं।

जिसके बीच से एक पतली सड़क निकली हुई है।

इसमें एक बेंच भी नजर आ रहा है।

यह पिक्चर एक गवर्नमेंट ब्लॉक का है।

यह पिक्चर एक फार्म का है।

जिसके अंदर काफी सारे व्यक्ति--

इसमें काफी सारी दुकानें भी--

ऊपर कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए हैं।

यह पिक्चर एक कैबिनेट की है।

ऊपर लाइट्स भी लगी हुई है।

और नीचे वाइट कलर की--